इस नदी में मुझे एक नाव नजर आ रहा हैं।

यहां पे मुझे कुछ पब्लिक दिख रहे हैं।

इस छत के दीवारों पे खिल लगे हुए हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे मुझे एक कमर नजर आ रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यह एक कैफे हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे किसी चीज का--

यहां तरह तरह के आकार में पत्थर नजर आ रहे हैं।

इस बिल्डिंग में मुझे टी_वी का एंटीना नजर आ रहा है।

जैसे की मैं यहाँ पे देख पा रहीं हूंँ मुझे यहाँ पे हरे भरे वृक्ष नजर आ रहें हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं मुझे इस तस्वीर में--

जहां पे रंग बिरंगी सूट रखे हुए हैं।

जैसे की मैं देख पा रही हूं यहां पे मुझे एक बड़ासा माल नजर आ रहा है।

इस दुकान में तरह तरह के सामान रखे हुए हैं।

इस हॉल की डेकोरेशन हो रहीं हैं।

इस बलून से हार्ट शेप का आकार दिया गया है।

यहां पे मुझे सिलाई की मशीन नजर आ रही है।

यहां पे मुझे कुछ हरे भरे वृक्ष नजर आ रहे हैं।

इस छत में मुझे लोहे की पाईप लगी हुई नजर आ रहीं है।

यहां पे मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

यहां पे खुला जमीन दिख रहा है।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

इस घर के सामने में छोटे छोटे गमले रखे हुए है।